घर में लिखा हुआ है फिटनेस गार्ड --

यहाँ पे एक --

एक बैंड बाजा भी बजाने वाला है हारमोनियम है ।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर है।

और ये पूरा टाइल्स रूम में लगा हुआ है और पंखा है।

बैलून है और एक बोर्ड लगा हुआ है एक बहुत सारे छात्र--

यहाँ पे एक रूम है।

और देख रहा है इधर कैमरा की तरफ--

लाइट बत्ती सब रूम में बर रहा है ।

एक आदमी जींस पहने हुए खड़ा है और आ रहा है और जा रहा है आदमी सब।

और पोस्टर भी लगा हुआ है पोस्टर में लिखा हुआ स्टेप अप --

डांस अकेडमी है शायद हम लोग यही बोल सकते हैं डांस एकेडमी --

और कुर्सी हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का ग्रीन कलर का कुर्सी भी है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी मछली बेच रहे हैं लेडीज है और बहुत सारे मछली --

और एक व्यक्ति उधर टूल पे बैठी हुई है एक व्यक्ति ऐसी बैठी हुई है।

और पेड़ के बगल में बहुत सारे घर हैं।

और एक आदमी है और एक औरत है।

और गाय को आदमी पकड़े हुए हैं।

और नीचे घर के बाहर में चित्र लगा हुआ है।

यहाँ पे लगता है कि सब्जी मंडी है।

और आलू टमाटर मिर्ची--

और ब्लैक टोजर पहने हुए खड़ा है एक व्यक्ति उधर मंडी में बैठा हुआ है सब्जी बेचने के लिए।

रोड है और इस रोड के बगल में बहुत सारे घर हैं।

और पत्थल रखा हुआ है रोड के बगल में--

और उसके बगल में बहुत सारे पेड़-पौधा हैं।

और एक व्यक्ति चक्का पे बैठा हुआ है।

और बगल में पेड़ उड़ है एक टावर है।

और यह एक बहुत बड़ा रूम है और दीवार में घड़ी टंगा हुआ है‌।

हिरन है जानवर है और इसके बगल में पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे--

और यह मसाला वाला मशीन है और बगल में ट्रैक्टर है।

और बहुत सारा पानी है एक आदमी पानी में--

यहाँ पे बहुत बड़ा--

और रूम में लाइट भर रहा है।

और एक टेबल है उस पे स्टडी करने के लिए बुक रखा हुआ है।

बस इतना ही है बहुत सारी यादी।

और पार्क के बगल में बहुत सारे जंगल हैं।

और हरा भरा बहुत सारे पेड़ हैं।

और इसके बगल में एक चित्र में कुछ है बना हुआ।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम है।

और यह जिम वाला व्यक्ति है।

यह एक रूम है और कुर्सी है।

एक गार्डन जैसा बना हुआ है।

इंडियन ऑइल पे पहुंचा हुआ तेल भराने के लिए--

और बहुत सारे आदमी पैदले भी जा रहा है और कुछ गाड़ी पे है।

कोट पहन कर के बैठा हुआ है।

आदमी भाई टी-शर्ट पहना हुआ है।

बहुत सारा समुंद्र में पानी है।

और दूर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा आदमी है।

रूम है और इसमें घड़ी है।

और बहुत सारी डाइनिंग टेबल रखा हुआ है।

एक ए_सी है और घर में लाइट बत्ती बर रहा है।

और एक लड़की बैठी हुई है अ ढेर सारा आदमी एक आदमी खड़ा है।

बहुत बड़ा बड़ा घर है एक पेट्रोल पंप है.

और बार में लिखा हुआ घर के दीवार पर मार्केट डी --

और एक व्यक्ति नीचे में है एक व्यक्ति ऊपर बैठकर काम कर रहा है।

और यहाँ पे दोनों व्यक्ति एक जवान है एक बुड्ढा है।

और कपड़ा का दुकान है ए_आई_एन_जी_बी --

और घर के बाहर में पोस्टर में लिखा हुआ है मां सीता एक--

और एक ड्रम है दो चक्का गाड़ी है।

साइकिल है ये और--

घर है और एक गाय बनी हुई है।

और गाय को चारा खिलाने के लिए दे रखी है।

दो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति पूरा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे पत्थर है जंगल है।

यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि कपड़ा का स्टोर है।

और नीचे पैर रखी हुई है एक चटाई नजर आ रहा है।

और एक टूल भी है उधर बगल में कोना में--

और इसके बगल में बहुत सारे खजूर का पेड़ है।

उस खजूर के पेड़ के नीचे बहुत सारे छोटा-छोटा पीला टाइप का फूल है।

बहुत सारे पेड़-पौधा हैं।

और इसमें मशीन में बहुत सारा दूध इससे निकलता है।

और बहुत सारा कॉपी किताब--

बहुत सारे और पेड़ के उधर आदमी के बगल में बहुत सारे घर हैं।

यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

और उसके बगल में बहुत बड़ा-बड़ा दोग पेड़ है।

और एक दूर गेट पे उधर एक गाड़ी नजर आ रहा है।

यहाँ पे बहुत बड़ा घर है।

और इसमें घर में खिरकी है।

नजर आ रहा है एक लड़की दो लड़का--

और डाइनिंग टेबल पर यह सब आदमी बैठा हुआ है।

और इस चित्र में एक पेड़ है।

और आदमी सब का चित्र बना हुआ है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम है।

रूम में चटाई बिछाया हुआ है।